इस चित्र में एक बड़ा सा दुकान है।

जो लाल पिंक और व्हाइट कलर के हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा टेबल है।

और राइट साइड जमीन पर मार्बल लगाया गया है।

और दो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं।

और लिखा हुआ है ड्राई क्लीनर।

इस चित्र में सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

और बहुत सारी गाड़ी खड़ी है जिसमें एक गाड़ी में परदा लगाया गया है।

इसमें बहुत सारा पानी है।

जिसमे ब्लू कलर का पेंट किया गया है।

इस चित्र में एक बड़ा सा ग्राउंड है।

जिसमें राइट साइड दो बड़े बड़े पीले कलर का बस है।

और हाथ पे माइक पकड़ी हुई है।

और तीन चार बड़े बड़े सर लोग हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा रूम है।

और सामने ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर है।

और अगरबत्ती जलाया गया है।

चित्र में सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

इस चित्र में एक बड़ा सा रूम है।

इस चित्र में एक छोटा सा दुकान--

इस चित्र में एक बड़ा सा रूम है।

इसमें कुर्सी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा पहनाया गया है।

जिसके सामने एक बड़ा सा दीवाल है।

और लेफ्ट साइड एक काले कलर का चैन गेट है।

और उस पर बहोत सारा कुर कुरकुरे लटकाया गया है।

और बहोत सारे बैलून लगाए गए हैं जो पीला और ब्लैक कलर का है।

और उसके सामने दीवाल में एक बड़ा सा शिशा लगाया गया है।

और बहोत तरह के किताब है।

दो वाइट कलर का शर्ट और एक जैकेट पहना हुआ है।

और सामने एक आदमी बैठा हुआ है और उसके बगल में एक हेलमेट है।

और लेफ्ट साइड एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

इस चित्र में सामने दो तल्ला बिल्डिंग है।

लेफ्ट साइड एक बहन है।

और सामने एक आदमी है जो लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इसमें बहोत सारा मूर्ति रखा हुआ है।

और नीचे गमला में बहुत सारा फूल है।

जिसमें बहुत सारा झालर लाइट और बहुत सारा लाइट लगाया गया है।